इसके पास कुछ दूभा है जो ग्रीन कलर की है।

हमे पानी की टंकी दिख रही है उसमे नल लगे हुए है जो व्हाइट कलर के है इसके आसपास कुछ मकान है जो ऑरेंज सिल्वर व्हाइट कलर के है इसके आसपास कुछ पेड़-पौधे है जो ग्रीन कलर के है।

इसमे बहुत सारा सामान रखा हुआ है बॉल रखी हुई है कपड़े रखे हुए है इसके आस पास कुछ गुब्बारे भी दिख रहे है जो व्हाइट एंड ब्लू कलर के है।

इसमे दुकान दिख रही है ओ सजी हुई है इस दुकान मे बोहोत सारा सामान रखा हुआ है इस दुकान के अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है।